ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पर देखिये कुर्सी और मेज रखे गए है और मेज के ऊपर गुलदस्ते रखे गए है और जो मेज है वो भूरे रंग का है और कुसी है वो स्टील रंग का है और निचे काले रंग की गदी लगी हुई है।

और ऊपर से देखिये बहोत सारी पाइप गयी हुई है।

और उधर दिखिए डिब्बे रखे हुए हैं और इधर देखे लोहे के डिब्बे रखे हुए है और यहाँ पे देखिए सफेद रंग की पॉलिथीन रखी गयी है और यहाँ पे देखिए दो पंखे लाइट लगे गए है और दीवाल का रंग गुलाबी है और --

सामने मंदिर का रंग हरा है और यह दीवाल है जो सफेद रंग का किया हुआ है और यहाँ पे जो द्वार है वो बैगनी रंग में किया गया है और यहाँ पर देखिए चार शेर--

गुलाबी रंग से पट्टी की गई है और यहाँ पर देखिये आगे नारंगी रंग में घर है और यहाँ पे देखिए कुछ मोटरसाइकिल खड़ी है जिसपे की कुछ आदमी सवार है और आसमान का रंग सफ़ेद --

शैम्पू है जिसमे की क्लीनीक प्लस और हेयर एंड शोल्डर है और इधर देखिए--